कुछ खेल भी रहे हैं बच्चे वगेरह भी है पीछे पोधे बड़े झाड़ दिख रहे हैं और फिर आसमान दिख रहा है।

ये एक शॉप है जिसमे ब्लैक अंगूर ग्रीन अंगूर अनार अ ऑरेंज और बे अं बेर टंगे है।

ये मुझे एक सुंदर सा उ हाउस दिख रहा घर दिख रहा है जिसमे बाहर बहुत सुन्दर ग्राउंड बना हुआ है आस-पास ग्रीनरी है।

पीछे एक मकान दिख रहा है जिसकी छत दिख रही है और उसे पर झाड़ आ रहा है ऊपर से --

और बहुत सारा सा एक ऑटो इधर उधर साइड में जा रहा है बहुत सारा ऑटो उधर जा रहे है और पीछे रास्ता दिख रहा है रास्ते में के पीछे एक ऍम एम एक बिल्डिंगे दिख रही है ।

जिसमें गेट गोल-गोल कॉलर के ग्रीन कलर के ब्राउन बने हुए है जिसमें व्हाइट लाइनिंग डाली हुई है और जैसे डिजाइन डाली हुई हैं।

एक रोड दिख रही है रोड पे एक स्कूटी से एक आदमी जा रहा है ऑटो जा रहा है सामने एक बड़ी मल्टी दिख रही है जिसमें अम म शॉप दिख रही है और बाहर एक फोटो लगें हैं एक लेडिस के और एक बच्ची के।

यहां एक गार्डन दिख रहा है जिसमें बहुत सारे लोग करीब दस बारह लोग योगा कर रहे हैं।